यहाँ पर काफी खूबसूरत है बहोत बड़ा नाला है नाला जैसे है वहाँ नीचे में मे बहुत काफी खू- खूबसूरत दिख रहा है सीन --

यहाँ होटल है यहाँ पे लिखा हुआ है गुड टाइम गुड टैस्ट।

यहाँ मंदिर है बहुत अच्छा दिख रहा है मंदिर यहाँ कृतन भजन पूजा पाठ होता है ऊपर मे साउन्ड भी लगा हुआ है दो तीन चार ठो लगा हुआ है साउन्ड।